और यहां पे बांध के रखा हुआ है और कुछ झाड़ियां भी हैं।

ये एक होटल है होटल में कुछ कुर्सियां और टेबले लगी हुई है और लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं कुछ बंजर जमीन भी दिखाई दे रही है कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी बाहर सामान लेने आया हैं जैकेट पहना हुआ हैं।